ये एक रूम है और इसमें दीवाल में एक एक एल_सी_डी लगी हुई है।

और उसके बराबर में एक ए_सी भी लगी हुई है।

और उसके नीचे दो आदमी भी खड़े हैं।

ये एक नदी है और इसमें पानी आ रहा है।

और नीचे कुछ सेंटरिंग का सामान भी रखा हुआ है।

और यहां पर एक बाइक खड़ी है और उसपे एक आदमी भी बैठा हुआ है।

यहां पे एक नीले कलर की ट्रेन खड़ी है।

और एक लाइट की खंबा भी लगा हुआ है।

और कुछ आस पास पेड़ भी लगे हुए हैं और कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

और कुछ आदमी भी खड़े हैं और एक ऊपर औरत खड़ी हुई है।

और एक सरहाने में वाइट कलर का गद्दा लगा हुआ है।

और उनपे कुछ आदमी और कुछ औरतें ऊपर जा रही है।

यह एक शोरूम है और इसमें कुछ पैकेट रखे हुए हैं नमकीन के।

और कुछ फिटिंग इसी भी रखी हुई है और उनमें कुछ डब्बे रखे हुए हैं।

और ऊपर बहोत सारी लाइट भी लगी हुई है।

और ऊपर कुछ बोड़ी के और कुछ पन्ना भी लगा हुआ है।

और उसमें कुछ हरी हरी घास लगीं है और कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

ये एक मंदिर है और इसमें बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

और इसके पास में कुछ डी_जे भी रखे हुए है।

और इसके पीछे कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

और उसके बराबर में कुछ छोटी छोटी मूर्ति भी उतारी हुई है।

और सामने कुछ शोरूम सा भी बना हुआ है।

और उनके चेहरे पे ब्लर लगा हुआ है।

और इसके पीछे एक वाइट कलर का पर्दा भी लगा हुआ है।

ये एक एस_बी_आई का बैंक है।

ये एक रेस्टोरेंट है और इसमें कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।

और एक मेज भी रखी है और उसे पर कुछ कांच के गिलास रखे हुए हैं।

और इसमें कुछ घास भी लगी हुई हैं।

और आस पास कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

ये एक नदी है और इसमें पानी जा रहा है।

एक बैनर भी लगा हुआ है जिसपे खाने का समान उतरा हुआ है।